मन्दिर है और साइड से घेरा हुआ है छड़ से अ गाड़ी लगा हुआ है ब्लैक कलर का चार चक्का गाड़ी। बहुत अच्छा डिजाईन बना हुआ है। ऊपर से गणेश जी का मूर्ति है।

बहुत अच्छा लगा रहा है देखने में। पूरा घेरा हुआ है लाल कलर छड़ से। मंदिर है गेट खुला हुआ है। ब्लैक कलर का गाड़ी लगा हुआ है चार चक्का गाड़ी।